सोफे पे सबके हुए ऊपर तकिए पड़े है हरे कलर का पीछे दीवार --

बेंच के ऊपर ड्रॉइंग का समान है कुछ कॉपियां कैंची कलर वगेरा--

इधर से कपिल स्वीट्स की दुकान में मिठाइयों की--

इधर कुछ कुकर पड़ा है प्लेट पड़ी है चम्मच पड़े है कोल्ड ड्रिंक्स की बोटल पड़ी है एक छबड़ी पड़ी है कपड़े पड़े है।

मोटर के पास गायें खड़ी हैं कुछ बंदर हैं कुछ सूअर है कुछ छोटे-छोटे हिरन हैं।

यहां पर आने के लिए वहां पीछे कुछ बच्चों के बैठने और लिए लगे हुए हैं बाहर ।

रेड कलर का शर्ट पहना हुआ है बस के पीछे कुछ पेड़ लगे हुए हैं ये जो बस खड़ी हैं वहां पर नीचे जमीन के ऊपर छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं पानी --

यहां पर एक मंदिर है ऊपर मूर्ति लगी हुई है।

कुछ अलग अलग रुम में बने हुए ऊपर भी कुछ रूम बने हुए हैं।